एक क्लासरूम में दिख रहा है क्लासरूम में बहुत सारी बैठने के लिए टेबल चेयर दिखरी है।

एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के पेड़ दिख रहा है अ बाहर कुछ टू व्हीलर्स दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है।

कुछ टेबल दिखाई दे रहे है कुछ बुक्स के लॉज दिखाई दे रहे है ऊपर एक वायर दिखाई दे रहे है कुछ अअ पाइप दिखाई दे रहे है फ्लाइट के कुछ अ अ--

एक है अअअअ उसमें कुछ टू व्हीलर्स टेबल पे रखी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर विंडोस दिखाई दे रही हैं नीचे कागज़ दिखाई दे रहा है।

एक शास्त्रिक म्यूजिक स्टूडियो का बोर्ड दिखाई दे रहा है कुछ फोटोज बनी हुई है।

आ एक गेट दिख रहा है जिसमे एम.आई.एल.एल.ए.टी. कॉलेज का बोर्ड दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ।

थाल दिखाई दे रही है एक म-शायद मंदिर दिखाई दे रहे हैं कुछ बलून्स दिखाई दे रहे हैं सामने मिरर दिखाई दे रहे हैं लालटेन लाइटिंग दिखाई दे रही है।

मनोज वर्कशॉप केए कैस्ट्रोल बाइक पॉइंट का बोर्ड दिखाई दे रहा है एक बाइक बनी हुई है और बाजू में और भी बोर्डस रखे हुए हैं सो --

व ऑटो दिखाई दे रहे अ एक दरबंगा मटर्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

लिस्ट में लिखा है एं और बर्गज लिखा हुआ --

आ एक हॉल दिख रहा है आ कोचिंग हॉल उसमे कुछ दिखाई दे रही है।

कुछ लोहे की रॉड दिखाई दे रही हैं पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ बिल्डिंग टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक मैदान दिख रहा है मैदान मे गार्डन दिखाई दे रहा है चारो तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है।

कुछ काउन्टर दिखाई दे रहे कुछ लाइट दिखाई दे रही है ऊपर डेकोरेशन दिखाई दे रहे कपड़ों का चादर का --